और ये नवे से हैं ब्लैक कलर के।

यहां पर एक ट्रक है ट्रक में एक गाड़ी लोड हो रही है।

नीचे मैदान में कुछ समान रखा है।

कुछ नीले कलर की और पीछे बहुत सारे पेड़ खड़े हैं।

नीचे ब्लैक कलर की टाइल बिछी हुई है।

और एक रिले कलर का बोर्ड है जिसपे कुछ लिखा हुआ है और यहां पर एक रेड कलर का--

यहां पर कुछ मैदान में पानी भरा हुआ है।

दो आदमी एक आदमी जाल पे चल रहा है एक आदमी खड़ा है।

यहां पर एक दुकान है और अंदर दुकान के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है और बाहर कुछ गिटार रखें हुए हैं और कुछ ढोलक और कुछ डमरू रखें हुए हैं और एक बल्ब जल रहा है।

और यहां पर कुछ पैकेट लगे हुए हैं।